यहां पे गुब्बारे लगे हुए हैं।

ये देख सकते हो ये तस्वीर है और ये यहां पे शेरा वाली मां जी की तस्वीर है।

ये यहां पे तस्वीर वगैरा भी दिख रही है।